नमस्कार दोस्तों
क्टर्टल में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यटोरियल में हम सीखेंगे कि क्टर्टल में प्रोग्राम कैसे लिखें
यूजर इनपुट को संचित करने के लिए वेरिएबल्स का उपयोग कैसे करें
कैनवास कैनवास पर प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड का उपयोग कैसे करें
लाइन को कमेंट कैसे करें
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु लिनक्स ओएस वर्ज़न 1110 और क्टर्टल वर्ज़न 081 बीटा का उपयोग कर रही हूँ
हम मानते हैं कि आपको क्टर्टल के कार्य की बुनियादी जानकारी है
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट httpspoken tutorialorg देखें
आगे बढ़ने से पहले हम क्टर्टल के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी पर चर्चा करेंगे
कैनवास पर प्रदर्शित टर्टल को स्प्राइट कहते हैं
स्प्राइट एक छोटी इमेज है जो स्क्रीन के चारों ओर घूमती है उदाहरणस्वरूप कर्सर स्प्राइट है
स्प्राइटहाइड कमांड टर्टल को कैनवास से गुप्त रखती है
स्प्राइटशो कमांड टर्टल को प्रदर्शित करती है यदि यह गुप्त है
क्लीयर कमांड कैनवास से सभी ड्रॉइंग्स को हटाती है
क्टर्टल में चिन्ह वेरिएबल्स का कंटैनर है
दो संख्याओं के गुणन के लिए उपयोगी है
संख्या की पावर को बढ़ता है
चिन्ह इसके बाद लिखी लाइन को कमेंट करता है
स्कॉर्ट संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है
नया क्टर्टल एप्लिकेशन खोलें
दश होम मीडिया एप्स पर क्लिक करें
टाइप में एड्यूकेशन और क्टर्टल चुनें
क्टर्टल एप्लिकेशन खुलता है
हम टर्मिनल का उपयोग करके भी क्टर्टल खोल सकते हैं
टर्मिनल खोलने के लिए एकसाथ CTRLALTT दबाएँ
क्टर्टल टाइप करें और एंटर दबाएँ क्टर्टल एप्लिकेशन खुलता है
अब मैं प्रोग्राम कोड टाइप करती हूँ और समझाती हूँ
मैं प्रोग्राम टेक्स्ट को जूम करती हूँ यह थोड़ा धुंधला हो सकता है
program टो फाइंड स्क्वेयर ओएफ आ नंबर एंटर दबाएँ
चिन्ह इसके बाद लिखी लाइन को कमेंट करता है
अर्थात यह लाइन निष्पादित नहीं होगी जब प्रोग्राम रन हो रहा हो एंटर दबाएँ
रिसेट रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजिशन में सेट करती है
एंटर दबाएँ
i एएसके डबल क्वोट्स में enter आ नंबर फोर आई एंड क्लिक ओक
i यूजर इनपुट को संचित करने के लिए एक वेरिएबल है
एएसके कमांड यूजर इनपुट को वेरिएबल में संचित करने के लिए पूछती है
एंटर दबाएँ
फोंटसाइज स्पेस 28
फोंटसाइज प्रिंट द्वारा उपयोगित फॉन्ट साइज सेट करता है
फोंटसाइज संख्या को इनपुट के रूप में लेता हैpixels में सेट करता है
प्रिंट ii प्रिंट ii संख्या के वर्ग की गणना और प्रिंट करता है
एंटर दबाएँ
स्प्राइटहाइड स्प्राइटहाइड कैनवास से टर्टल को छुपाता है
अब प्रोग्राम रन करें
एडिटर में कोड का निष्पादन शुरू करने के लिए टूलबार में रुन बटन पर क्लिक करें
यह निष्पादन गति की सूची दर्शाता है
फुल स्पीड फुल स्पीड स्लो स्लॉवर स्लोवेस्ट और step by स्टेप
मैं कोड को स्लो गति में रन करती हूँ
एक इनपुट बार प्रदर्शित होता है
आई के लिए 15 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
15 का वर्ग 225 कैनवास पर प्रदर्शित होता है
अब प्रोग्राम के माध्यम से संख्या के न्थ पॉवर को ज्ञात करें
मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही प्रोग्राम है
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करती हूँ और इसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करती हूँ
कृपया यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और प्रोग्राम को अपने क्टर्टल एडिटर में कॉपी करें
मैं प्रोग्राम टेक्स्ट पर जूम करती हूँ
प्रोग्राम का स्पष्टीकरण
चिन्ह इसके बाद लिखी लाइन को कमेंट करता है
रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजिशन में सेट करती है
i और n यूजर इनपुट को संचित करने के लिए वेरिएबल्स हैं
एएसके कमांड यूजर इनपुट को वेरिएबल्स में संचित करने के लिए पूछती है
फोंटसाइज 28 प्रिंट द्वारा उपयोगित फॉन्ट साइज सेट करता है
फोंटसाइज संख्या को इनपुट के रूप में लेता हैpixels में सेट करता है
प्रिंट iएन संख्या की न्थ पॉवर की गणना और प्रिंट करता है
स्प्राइटहाइड कैनवास से टर्टल को छुपाता है
प्रोग्राम रन करें
आई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
एन के लिए 4 प्रविष्ट करें ओक पर क्लिक करें
54625 कैनवास पर प्रदर्शित होता है
आगे संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम में इंबिल्ट स्कॉर्ट फंक्शन का उपयोग करें
मैं एडिटर से कोड कॉपी करके क्टर्टल के एडिटर में पेस्ट करती हूँ
कृपया यहाँ ट्यूटोरियल को रोकें और प्रोग्राम को अपने क्टर्टल के एडिटर में कॉपी करें
मैं प्रोग्राम टेक्स्ट को जूम करती हूँ यह थोड़ा धुंधला हो सकता है
मैं कोड समझाती हूँ
चिन्ह इसके बाद लिखी लाइन को कमेंट करता है
रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजिशन में सेट करती है
i यूजर इनपुट को संचित करने के लिए वेरिएबल है
फोंटसाइज 28 प्रिंट द्वारा उपयोगित फॉन्ट साइज सेट करता है
प्रिंट स्कॉर्ट i संख्या का वर्गमूल प्रिंट करता है
स्प्राइटहाइड कैनवास से टर्टल को छुपाता है
अब मैं प्रोग्राम रन करती हूँ
आई के लिए 169 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
169 का वर्गमूल 13 कैनवास पर प्रदर्शित होता है
फिर से रन करें
आई के लिए 169 प्रविष्ट करें और ओक क्लिक करें
यदि हम ऋणात्मक संख्या प्रविष्ट करते हैं आउटपुट नान है अर्थात नोट आ नंबर क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं है
अब प्रोग्राम के माध्यम से धनात्मक संख्या के घनमूल का मूल्यांकन करें
मैं प्रोग्राम को एडिटर से कॉपी करके क्टर्टल के एडिटर में पेस्ट करती हूँ
कृपया यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और प्रोग्राम को अपने क्टर्टल एडिटर में कॉपी करें
मैं प्रोग्राम टेक्स्ट को जूम करती हूँ यह थोड़ा धुंधला हो सकता है
मैं प्रोग्राम समझाती हूँ
चिन्ह इसके बाद लिखी लाइन को कमेंट करता है
कृपया ध्यान दें यह सिंगल लाइन कमेंट है
प्रत्येक कमेंट चिन्ह के आगे आना चाहिए
रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजिशन में सेट करती है
i और C यूजर इनपुट को संचित करने के लिए वेरिएबल्स हैं
Cआई13 संख्या के घनमूल की गणना करता है
फोंटसाइज 28 प्रिंट द्वारा उपयोगित फॉन्ट साइज सेट करता है
प्रिंट C संख्या के घनमूल को प्रिंट करता है
स्प्राइटहाइड कैनवास से टर्टल को छुपाता है
अब प्रोग्राम रन करें
आई के लिए 343 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
343 का घनमूल 7 कैनवास पर प्रदर्शित होता है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
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
प्रोग्रामिंग कंसेप्ट
स्कॉर्ट फंक्शन का उपयोग
प्रिंट कमांड का उपयोग
क्टर्टल एडिटर और कैनवास का उपयोग करना
एक नियत कार्य के रूप में मैं चाहती हूँ कि आप संख्या के घन संख्या के न्थ रूट ज्ञात करने के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग कमांड का उपयोग करें
इस लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें httpspoken tutorialorgWhat इस आ स्पोकेन ट्यूटोरियल
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद